यहां पे बहुत सारे आदमी दिख रहे है बच्चे दिख रहे है।

यहां पे देख सकते हो ये दो एक आदमी है और एक बच्चा खड़ा हुआ है।

ये यहां पे देख सकते हो ये शीशे लगे हुए हैं।

ये यहां पे बच्चे कलर ले रहे हैं और ये पेंटिंग कर रहे हैं और ये दो मैडम और एक टीचर खड़ा हुआ है।

और यहां पर ये बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है और ये यहां पे--

ये शेरावाली मां जी का मंदिर है।

पेड़ भी लगे हुए है औ यहा पे--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

एक आदमी है और एक बच्चा है।

और यहाँ पे एक चेयर और रखी हुई है खाली है।

और यहां पे ये सैलुन लिखा हुआ है।